यह किसी कपड़े का दुकान है।

नीचे लोग बैठ के ये एक्टिविटीज का आनंद ले रहे हैं।

और लाइट्स के लिए एक पाइप के ऊपर लाइट्स लगाया गया है।

आगे तरफ ग्लास के आर पार बहुत सारी मिठाइयां है।

एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

यह चित्र किसी हंस पालन के लिए बनाया गया एक घर का है जिसमें कई सारे हंस बैठे हुए हैं।

और दुकान में लोग खरीदारी कर रहे--

जिसमें दो घर है आमने सामने।

नदी में नहा रहे हैं और दो लोग साइड में खड़े हुए हैं।

एक लाल रंग का स्टूल है और एक व्हीलचेयर है।

दुकान के साइड में बड़े दो घर है।

इसका शटर बंद है और बोर्ड में डॉक्टर अरिजीत हर लिखा हुआ है।

दूसरे गाड़ी का आगे एक बोर्ड है जिसमें और इमरजेंसी ड्यूटी और डब्लू_बी_ए_सी_डी_सी_एल लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में दो घर का चित्र है।

शादी की प्रक्रिया चल रही है साइड में शादी का माहौल है डेकोरेशन लगा हुआ है लाइट्स है।

एक आदमी एक बच्चे को लेके जा रहा है।

यह किसी मेल इनर गारमेंट्स का दुकान है।

घर के वॉल टीन का बना हुआ है और जो बर्तन है वो व्हाइट एंड रेड कलर का है।